सभी बस एक दूसरे से काफी दूर खड़े हुए हैं।

ऊपर की ओर आसमान कफी साफ नजर आ रहा है।

सामने की ओर एक बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

बड़े से नीले रंग के बोर्ड पर इस बैंक का नाम लिखा गया है।

इस दुकान को लाइटों की मदद से सजाया गया है।

कुछ व्यक्ति भी खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सभी लोग आपस में मिलकर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बगल में लकड़ी के बनाए उस रैक पर बहुत सारे फूल वाले गमले भी रखे गए हैं।

इस कैफे को लाइटों की मदद से सजाया गया है।

जिसे सफेद और नीले रंग से कलर किया गया है।

रूम के दीवाल पर बहुत सारे तस्वीर लगाए गए हैं।

सभी बांसों को अच्छे से अपने अपने जगह पर लगाया गया है।

दीवार पर एक ढोलक भी लटकाया गया है।

सभी मर्द व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे पहने हैं।

यहां गैस सिलेंडर कढ़ाई और भी बहोत सारे सामान रखे गए हैं।

यह दुकान कपड़े का है।

इस तस्वीर में माले वाले फूलों का एक बड़ा सा ढेर नजर आ रहा है।

सामने की ओर काउंटर पर एक अवार्ड रखा है।

सभी सामानों को अच्छे से सजा करके रखा गया है।

मस्जिद बहोत बड़ा और बहोत खूबसूरत नजर आ रहा है।

गार्डन बहोत बड़ा और बहोत खूबसूरत नजर आ रहा है।

ऊपर की ओर तीन पंखे लटके हुए नजर आ रहे हैं ।

ऊपर की ओर आसमान बहुत साफ दिखाई दे रहा है।

चर्च का रंग लाल नजर आ रहा है।

स्टेज को लाइटों की मदद से सजाया गया है।

बैंक में काम करने वाले लोग अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां छोटे बड़े सभी तरह के साइकल मौजूद नजर आ रहे हैं।